इ पिक्चर लिया गया है स्कूल का ।

ये फूल पिक्चर लिया गया है फूल का दुकान का जिसमे बहुत सुन्दर से फूल गुथी हुई है लड़ी लगाई हुई है।

ये पिक्चर लिया गया है आर. के. इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का।

और सेब रखे हुए हैं और --

कचरा भी फेका हुआ है |